सामने सामान रखने के लिए कबर्ड बनाया गया है।

यहां लोहे के शटर लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत ही ज्यादा साफ सफाई का व्यवस्था रखा गया है।

यहां चार बच्चे एक शेर का एक भालू का एक टाइगर का एक खरगोश का कपड़ा पहना हुआ है।

यह एक मछली मार्केट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही है।

यह एक मछली दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने ट्वेल्व कॉमर्स लिखा हुआ है।

आगे कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

आगे दो फ्रिज भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

छत से बहोत सारे बड़े बड़े बिल्डिंगें भी दिखाई दे रहे हैं।